यह एक महा विद्यालय है। यह विद्यालय बहुत ही बड़ा है। यह विद्यालय रोड के किनारे में ही है। इस विद्यालय के बाहर बहुत सारी गाड़ियां खड़ी है। और यहाँ बोहोत सारे लोग भी है।

यही जगह पर एक मेला लगा हुआ है यह मेला बहुत ही --

दो बहुत दुकानें हैं इन दुकानों के बाहर बहुत सारे लोग हैं इस दुकान के ऊपर में एक घर बना हुआ है यह घर बहुत बड़ा है यह दुकान बिल्कुल सड़क के किनारे पर है।